एक पहाड़ है। उस पहाड़ पे बहोत घना जंगल है।

यह बहोत सारे नारियाले का पेड़े हैं। वहा पर फूल पीला फूल बैगनी फूल --

है। वहा आसमाने है। वाइट कलर के दिख रहे हैं। वहा --

टावर लगा हुआ मट्टी खोदा हुआ--

बहोत मशीन हैं।

आगे से जो है गेट खुला हुआ है। यहां पे एक लगा हुआ है।

और चारों तरफ से लाइटे आ रही। डिजाइने बोहोत सुंदर बनाया --

आसमान में बादल छाया हुआ बहोत सुंदर दिख रहा है। पानीया बहोत ज्यादा है।

बोहोत सुंदर लग रहा है दुकानें --

और [ है। चारो तरफ लोहे से घिरा हुआबाल्टी रखा हुआ है।